यहाँ पे कोई इसका दुकान होगा। यहाँ पे मतलब स्कूटी है और स्कूटर भी है और गाड़ी सब वहाँ --

ये है और आसमान भी नीला है देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और अच्छी भी है और बहुत खूबसूरत --

ये मैदान बहोत ज्यादा खूबसूरत हैं। ये मैदान देखने में भी अच्छा है। बच्चों के लिए खिलौना भी हैं एक पेड़ पेड़-पौधे कितने खूबसूरत हैं हरे-भरे जंगल हैं आसमान भी नीला है बच्चे खेलते हैं तो बहोत अच्छे लगते हैं देखने में बहोत ज्यादा खूबसूरत है।